और पहाड़ों में तो पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं बाकी कोई चीज --

तस्वीर में एक बिल्डिंग है बिल्डिंग जो काफी पुरानी है बहुत ज्यादा समय की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में दो अलमारियां हैं एक तखत है बहुत से जो सामान है।

तस्वीर है और ये बहोत अच्छी तस्वीर है और ये एक जंगल की तस्वीर है। जंगल के बीचो बीच एक जाल लगा है।

और संगम में जो कुछ लोग पूजन कर रहे हैं हाथ में अगरबत्ति लेके और पानी में चढ़ो के डपके लगा रहे हैं और ये ब्रिज है ब्रिज पे जो है लोग ब्रिज से भी नीचे देख रहे हैं झांक करके ऐसा लगता है इससे गड़गंगा की तस्वीर हैं।